एक स्विच बोर्ड दिख रहा है सब बच्चे पढ़ रहे हैं।

और बिल्डिंग जो है व्हाइट कलर की है थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर भी है और बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं यहां पर खिड़कियां भी है।

इस फोटो में यहां पर फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एप्पल --

नीचे लिखा है बरफ ही बरफ--

इस फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की एक लाल और सफेद रंग की है।

एक लड़का हैं जो कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ हैं।

दीवार जो है वह ब्लैक कलर की--

इस फोटो में एक कैफे दिखाई दे रहा है। बैठने की जगह दिख रही है। सामने एक ए_सी लगा हुआ है।

गुब्बारे लगे हुए हैं येलो व्हाइट रेड ग ग्रे कलर के।

इस फोटो में जो दीवार है वो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ऊपर पंखे लगे हुए हैं सामने शीशा लगा है।

ये जो लिखा है सेवन्टिपरसेंट ऑफ सेल ठीक है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं घास दिखाई दे रही है सामने।

ठीक है पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहां पर ठीक है और दिन का समय है ही --

मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और यह जो चेयर होती है ना पेशेंट के लिए--

ठीक है दिन का समय है और सामने एक बाइक खड़ी हुई है यहां पर एक हेलमेट भी रखा है।